सारे पानी है। यहाँ पर बहुत सारे आदमी इस --

यहाँ खाते भी खोले जाते हैं। इस बैंक के बाहर काफी सारे बाइक खड़े हैं। का --

सारे रैक है। यहाँ रैक

ब्यूटी पार्लर है। यह ब्यूटी पार्लर काफी बड़ा है। इस पर सी --